एक रोड है जिसके किनारे पर एक कार पार्क है कार का नंबर प्लेट है डब्ल्यू बी सिक्स जीरो एम जीरो --

एक सैनिक साइकल मार्ट का बोर्ड लगा हुआ --

टेबल पर एक व्यक्ति बैठा है जिसने अपना मास्क खोला हुआ है तथा सेल फोन चला रहा है बगल में एक टेबल पर दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके बगल में एक पॉलिथीन रखी हुई है।

एक आरती बुक सेंटर है जहाँ दुकान नंबर लिखा हुआ है वह अंदर बहोत सारे व्यक्ति दुकान को संभाल रहे --

पास में एक साइकिल सवार व्यक्ति अपने दोनों हाथों को सीट पर टिकाए खड़ा है बगल में एक पेड़ लगा हुआ है तथा आस-पास बहोत सारे घास-फूस उगी है।

चर्च है जहाँ पर दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ है छत पर लाइट और फेन लगी हुई है दीवार पर एक घड़ी है पीछे एक रेड कलर का पर्दा लगा हुआ है सामने एक व्यक्ति स्पीच दे रहा है।